ऑटो काला रंग का है सामने की तरफ़ एक बिल्डिंग दिखाई रही है जो कि सफेद रंग की है जिस पर --

दिखाई दे रहा है सामने के तरफ़ एक ग्राउंड दिखाई दे रहा है। जिसमें --

खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्डिंग बोहोत बड़ी है जिस पे और भी बोर्ड लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

कुर्सियाँ दिखाई दे रही हैं कुर्सियो पर बच्चे हैं जो की --

पीछे की दीवार दिखाई दे रही है जो कि सफेद रंग की है।

यह एक कमरे का दृश्य है जिस में उपर की छत दिखाई दे रही है जहाँ लाईटे लगी हैं।

दिखाई दे रही है द्वार दिखाई दे रहा है। द्वार भी नीले रंग से रंगा हुआ है जहाँ की उसके आस-पास --

यहाँ एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है जो की सफ़ेद रंग की है।

हरे रंग की शर्ट और शर्ट पहना हुआ है। वह खड़ा --